एक आंटी बैठी हुई बातें कर रही हैं।

बुक शेल्फ का एक आदमी बुक शेल्फ की ओर आ रहा है बहोत--

लेने के लिए कतार में खड़े हैं बाइक्स वाले खड़े हैं पैदल वाले खड़े हैं अपने-अपने रास्ते के लिए खड़े है।

और बहुत मनमोहक दृश्य है दो लोग खड़े हुए फूल देख रहे हैं।

आजू बाजू बहुत से दरखत लगे हुए हैं सुंदर नजारा लग रहा है।